सड़क के साइड से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

और आगे पहाड़िया नजर आ रही है।

लाल और सफेद रंग के गेंद हैं।

ये बाइक्स भी दिखाई दे रहे--